कुछ घर नज़र आ रहें हैं। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहें हैं।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं| कुछ ए.सी. के एगजस्त भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान नजर आ रहा है।